वो लोग देख रहे हैं।

जो कि व्हाइट कलर में है और एक ब्लू कलर में हैं।

यहां पर पांच छे बच्चे है जो की कुछ बना रहे हैं।

और ऊपर में लाइट्स लगी हुई है बहुत बढ़िया से स्टूडियो टाइप का--